एगो पेड़ बा घर बा दुगो आदमी जात बाटन सब खम्भा बा तार बा |

कार बाबहुते सारा आदमी बा सफेद कलर बा आसमान बा बड़ा निक लागत ता।